समान रखे गए है जैसे गिटार हारमोनियम --

बड़ा है होने वाला है पर इस पूल को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा।

कछुआ बहुत ही शांत जानवर है कछुआ --